चित्र में हमें एक दुकान दिखाया गया है। जहां पर आ बक्सों में कई सारी चीज रखी गई। जो हमें घर को इस्तेमाल करने के लिए होती है जैसे की मानलो --

चित्र में हमें मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे लोग आए हुए हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए वेजिटेबल्स होते हैं और हम देख सकते हैं कि यहां पर आ कितना सारा सामान--

चित्र में हम देख सकते है कि यहाँ पर हमें बड़ा-आ सा मैदान नजर आ रहा है। जहाँ पर कइ सारे बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे है।

ऊपर से पानी पड़ रहा है नीचे की ओर पर। हम देख सकते हैं कि यहां पर सड़क है जहां पर लोग आते नजर आ रहे हैं यहां पर कुर्सी लगाई गई है। लोगों को बैठने के लिए पर--

हम देख सकते हैं कि यहां पर सीढ़ियों से होकर आ गुजरता है और कई सारे पेड़-पौधे हैं यहां पर कई सारे लोग हैं जो ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं।

हम देख सकते हैं कि यहां पर लड़कों ने आ बहुत ही खूबसूरत सा सूर्य और एक आ जो डॉल होती है उसका ड्रेस बनाया है पेपर में लैंप बनाया है कई सारे अलग-अलग चीज़ें बनाई हैं पंखा--

और यहां पर अ पुरुष भी है और महिला भी मौजूद नजर आ रही है एक पर को उठाकर दोनों हाथों को जोड़कर सूर्य नमस्कार किया जा रहा है बड़ी इसी जगह है। जहां पर योग का हम काफि लोग कर सक--

ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां पर मुफ्त का काम चला रहे हैं पीछे हम देख सकते हैं की पोस्टर में मौजूद नजर आ रहा है सर दर्द हो या बंद दिमाग नाक दर्द वगैरह हो यहां पर दिखा सकते हैं ।